यहाँ पर कुछ लोग है मंदिर है और मंदिर के बाहर कुछ लोग हैं जो कि जेंट्स है और और कोई लड़के हैं।

यहाँ पर अ-- कुछ लोग बैठे हुए हैंऔर मछलियाँ रखे हुए हैं छोटी-छोटी मछलियाँ कुछ एक बॉक्स में रखी हुई है नो और एक साइड में कुछ प्लास्टिक की बास्केट वगैरह में रखे हुए हैं।

गे जो ये गेट है जो की मिरर का बना हुआ है मिरर ग्लास से बना हुआ है गेट है कांच काऔर जिस पर कुछ नंबर वगैरह लिखे हुए हैं।

ग्रीन टाइप की रखी हुई अलग-अलग रखी हुई है ट्रेन जिसमें अलग-अलग प्रकार की फिशेस रखी हुई है कुछ बड़ी फिश है कुछ छोटी फिश है रखी हुई --